वहां पर एक मैदान है। यहां पर झुपरपट्टी हैं। झूले हैं।

यहाँ पर एक वाइट कलर की कार दिखाई दे रही है। एक बुलेट दिखाई दे रही है। यहाँ पर --

ग्रिजर भी रखा हुआ है। जंगला दिखाई दे रहा हे।

बेंच रखी हुई हैं। यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। हरे भरे पेड़ झाड़ दिखाई दे रहे --

यहाँ पर बहोत सारे स्वेटरे दिखाई दे रही --

हरे-भरे पेड़ घर दिखाई दे रहे हैं। इधर साइड मे नदी दिखाई दे रही है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है इसका वाइट कलर है चॉकलेटी कलर है सीढ़ी का वाइट कलर है एक टंकी रखी हुई है साइड में।

यहाँ पर बहुत सारे मक्के दिखाई दे रहे है उनके अलग-अलग डिज़ाइन हैं।

यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है। उसमे सीढ़िया दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बोहोत सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।